आसपास पेड़ और हरियाली दिख रही है आकाश में बादल छाए हुए--

यह जगह किसी खुली जगह या आंगन जैसे लग रही है।

बायीं ओर टायर और अन्य ऑटोमोबाइल एसेसरीज रखी हुई --

कुछ लोग अस्पताल में अंदर जा रहे हैं एक व्यक्ति बाइक के पास खड़ा है।

सड़क के किनारे एक गला सेंटर भी है पेड़ की छाया सड़क पर पड़ रही है।

एक लंबी गद्देदार बेंच दीवार के साथ लगी हुई है।

ऊपर छोटे रंगीन बल्ब लगी है जिससे हल्की सजावट दिख रही है पीछे एक काउंटर दिख रहा है।

यहां कोई आर्डर ले रहा है कुछ लोग बैठे हैं और कुछ आर्डर लेते --

यह एक सैलून का इमेज है दीवारों पर लकड़ी का डिजाइन बना हुआ है।

है लाल और सफेद टाइलो वाला फुटपाथ दिख रहा है एक व्यक्ति बैग लेकर हवाई जहाज की और जा रहा है।

दीवारों पर भूरे और सफेद रंग का अच्छा कॉन्बिनेशन दिख रहा है।

सामने कुछ गड़ियां लगी है इनमें सफेद रंग का कारें ज्यादा हैं।

रंगीन पारंपरिक वेशभूषा में स छह छोटी मूर्तियां है ये --

पीछे की दीवार पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ जानकारी चिपकाई गई है।

खूबसूरत लग रहा है यह जगह शांति और ताजगी से भरी हुई लग रही है।

और पथरीला है यह यात्रा लोगों को प्रकृति से जोड़ती है।

तस्वीर में एक कच्ची सड़क दिखाई दे रही है आसमान में हल्के बादल फैले हुए हैं।

एक दुकान दिख रही है जहां अलग अलग चीजें बिक रही हैं दीवार पर लगी स्क्रीन पर फ्लाइट की --

जहां लोग इकट्ठा होते हैं एक व्यक्ति माइक के साथ बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति संगीत बजा रहा--

व्यापार के लिए खास डाक सेवा है विज्ञापन और अखबार जैसे --

झील के चारों ओर छोटे छोटे आइलैंड नजर आ रहे हैं।

भूरे रंग कि सुखी जमीन और कुछ हरे पौधे भी दिख रहे हैं मौसम साफ और हलका धुंधला लग रहा है जिससे पहाड़ थोड़े धुन --

यह जगह शांत और अच्छी लग रही हैं आसमान नीला हो रहा हैं।

सड़क के पास बिजली के तार और खंभे लगे हुए हैं।

दाएं तरफ एक लंबी बेंच दी गई है जिस पर ग्राहक बैठ सकते हैं।

चीजे रखी हुई हैं और पास में एक कुर्सी रखी है टेबल के बाईं ओर--

दीवारो और छत पर लाइट लगी हुई है जिससे जगह साफ और चमकदार दिख रही है।

चर्च को सुंदर सजावट से सजाया गया है जैसे रंगीन--

यह डिवार पर शीशा लगा हुआ है जिससे रिफ्लेक्शन दिख रहा है फर्श पर अलग-अलग डिजाइन की टाइल्स है यह जिम अच्छी तरह से सेटअप किया हुआ लग रहा है।

पीछे की तरफ रंग बिरंगी प्लास्टिक की अल्मारिया रखी हुई है।

यहां काठियावाड़ी पंजाबी चाइनीस साउथ इंडियन नाश्ता और स्नेक्स मिलते हैं।

रेस्टोरेंट के बाहर मोटरसाइकिलें में खड़ी है यानी या पार्किंग की सुविधा है।

बच्चे और बड़े मिलकर कुछ सीख रहे हैं सभी लोग खड़े होकर हाथ उठा रहे हैं।

दीवारे लाल और सफेद रंग की है एक बड़ा शीशा लगा है बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने --

तस्वीर में धूप और छाया का मिश्रण दिखाई दे रहा है। रास्ते के--

यह इमेज एक कैफे की लग रही हैं कैफे के अंदर चेयर्स पड़ी हैं और शॉप के--

गेट पर बहुत सारे खाने की डिशेस का पोस्टर है जैसे पिज़्ज़ा बर्गर ।